भूरा और सफेद रंग का पता ना क्या है ।

आगे पीछे लोग बैठे हुए है बीचों बीच एक डस्टबिन दिख रहा है जो हरे कलर का है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूं कि ये कोई डी मार्ट वेगैरा दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सामान है इस सामान में बहुत सारे रैक में जमे हुए हैं।

मैं यहाँ पे जहाँ तक देख पा रही हूं एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बहोत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है मेरे --

और इसकी रसोई में बहुत सारे सफेद कलर के लाइट भी लगी हुई है।

और उसके ऊपर में एक काले कलर का लंबा लंबा कुछ दिखाई दे रहे हैं।

मैं इस पे यहां तक देख पा रही हूं मिक्सर मशीन दिखाई दे रहा है मिक्सर मशीन के जो ऊपर वाले भाग है पूरी तरह से धूल धूल दिख रहा है मेरे को।

मिक्सर मशीन के बगल वाले बाग में मेरे को रेत का ढेर दिखाई दे रहा है बहोत सारे रेत रखे हुए है।

कुर्सी सफेद कलर के है पूरी तरह से और उसमें जो छोटे छोटे कुल कूर कपड़ा लगा हुआ है--

मैं यहां पे जहां तक देख पा रही हूं एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

और डिब्बे के अंदर बड़े बड़े डिब्बा भी रखे हुए हैं।

गेट में हल्का हल्का भूरे रंग का भी डिजाइन किया हुआ।

गेट जो है एकदम सुंदर बहोत ही दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें जो उसका पिज़्ज़ा का अलग अलग का चित्र बना हुआ है।

ये बड़ा सा दिवाल में चित्र लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कि अलग अलग दुकान है जिसमें सामान है।

मैं यहां पे देख पा रही हूं एक छोटा सा मैदान--

बहोत सारे गद्दी वाले चेयर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हुए हैं।

मैं अपना पेट्रोल डलवाऊंगा कर के खड़े हुए हैं।

इसमें मेरे को बहोत सारे अलग अलग रैक दिख रहे हैं जिसमें कपड़े जमे हुए दिखाई दे रहे हैं।